एक मकान है। मकान मे सफेद कलर के और गुलाबी कलर के पेंट हुआ है। उसमे बहुत सारे अलमारी सामने दिख रहे है जिसमे कांच लगे हुए है और बगल मे एक सफेद कलर का रखा हुआ है। ऊपर लाइट लगी हुई है।

और सबसे ऊपर एक काले कलर की पानी की टंका रखा हुआ है और सामने से बहुत सारे तार गए हुए है।

और ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ हैं जिसमे सिटी हॉस्पिटल लिखा हुआ हैं |